यहां पर एक बहोत बड़ा पैलेस है।

और यहां पर इसे पर्दों से सजाया गया है। यहां पर काफी सारे रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए हैं।

और इसमें काफी सारे पर्दे टंगे हुए है।

और यहां पर काफी सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

यहां पर एक सामने पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा हुआ है।

और इस कोठी के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है।

और उसने ब्लैक कलर की कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए--

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यहां सामने बहुत बड़ी दुकान है।

इधर भी छू लिया है और कुछ तकिया रखे हुए हैं।

यहां पर सामने एक घर बना हुआ है।